ओ गांव में होता है जैसे खुला पेड़ वगैरह लगे होते हैं घास लगी होती है इसमें आपको दिख रहा है ना हरी भरी घास है हरी कलर की हैं।

यह है क्लोथ्स की शॉप यहां पे कपड़े वगैरह मिले जाते हैं इसमें आपको दिख रही है ना टी शर्ट है नीचे तह लगाकर शर्ट भी रखी हुई हैं हरे रंग की हैं।

सीसा वगैरा सब लगा हुआ है ऊपर देखो फैन भी है।

घोड़े पे एक लेडिस बैठी है ये हैं--

है ना और ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं आपस में और ये फोटो खिचवा रहे होंगे शायद से तू--

यहां पे ना वो खेल रही हैं फुटबॉल आपको कितने जने दिख रहे हैं है ना एक बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा है और तीन चार बंदे आसपास भी खड़े हैं।